यह एक जगह का चित्र है। यहा पर किनारे पर खाने के डिब्बे रखे हुए है।

यहा चित्र डॉक्टर के कैबिन का है जहा पर गुलाबी रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर काफी सारा सामान है। बगल मे दो कचरे डिब्बे दिख रहे हैं। एक लाल रंग का है एक नीले रंग --

ऊपर की ओर चार चैन दिख रही है। पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक डीजे का चित्र है डीजे में दोनों तरफ लाउडस् --

यह चित्र एक कक्षा का है जहा पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एक पुरुष लाल टीशर्ट में पढ़ा रहे हैं।